हमको यह फोटो में रिसोर्ट दिखाई मिल रहा है।

हमको यहां में एक कड़ाही दिखाई मिल रहा है।

यहां में बहोत सारा वायर दिखा लग रहा है।

ये बोर्ड में आशा रेस्टोरेंट लिखा हुआ है हमको एक बंद दुकान भी दिखाई मिल रहा है।

हमको यहां पे एक आदमी दिखाई मिल रहे हैं।

हमको यहां में एक लाइट पोज भी दिखाई दे रहा है हमको यहां में पहाड़ भी दिखाई मिल रहा है आसमान में हमको फोगी दिखाई मिल रहा है।

हमको यहां में एक रूम देखने को मिल रहा है ये रूम का कलर पिंक है।

ये हल्का बड़े कंप्यूटर दिखाई मिल रहा है हमको यहां में एक पर्दा भी दिखाई मिल रहा है।

इसमें हमको छोटा छोटा पत्ता भी दिखाई मिल रहा है इस फोटो में हमको ब्रिज भी दिखाई मील रहा है सुखा हुआ घास लोग भी दिख रहा है।

हमको ये फोटो में वॉल भी दिखाई मिल रहा है यहां में हमको लोग भी दिखाई मिल रहा है।

हमको पेड़ कोई दिखाई मिल--

ये आदमी लोग का फेस ब्लर है।